यह एक कानघर की तस्वीर है यहां पर पेड़ पौधे हैं।

यह एक सफेद कलर का तीर्थ स्थल है इसमें कई मूर्तियां बनी हुई हैं यहां पेड़ पौधे हैं।

के पास में उनके मां बाप बैठे हुए हैं पंडित है।

और फैन लगे हुए हैं।

यह साइकल बनाने की दुकान है यहां पर बहोत सारी साइकिले खड़ी हुई हैं।

यहां पर तालाब में बहोत सारे पक्षी है।

और पेड़ पौधे हैं कुछ पक्षियां आसमान में उड़ रहे हैं।

यह एक ढाबा है यहां पर दो मेज पड़ी हुई है उसके पास में कुर्सियां है।

मोमबत्ती दीए भी जले हुए हैं इसके साइड में टेंट लगा हुआ है।

जिनकी शादियां हैं उनकी फोटो लगे हुए हैं।

यह एक सैलून है। इसका नाम यूनिसेक्स सैलून है। इसके बैनर पर हेयर स्किन मेकअप हेयर स्पा --

यह एक कच्चा मकान है।

यह जिम की तस्वीर है यहां पर दो जनी सेल्फ़ी ले रहे हैं।

यह एक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान है।

यहां पर बहुत सारी गाड़ियां है।

एक व्हाईट गाड़ी सबसे अलग खड़ी है।

इसके पास में एक व्यक्ति साइकल पर और एक व्यक्ति बाइक पर है।

यहां एक गाड़ी भी खड़ी हुई है और यहां पर एक ट्रांसफार्मर है।

यहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

दरवाजो के पास अलमारी रखी हुई है एक छोटी सी।

इस दुकान पर बैनर लगे हुए है।

और इसके पास में एक झूमर है।

सूर्य अस्त का समय है।

और एक पोस्टर भी लगे हुए है।

और एक आदमी लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है।

इस आदमी के पीछे बहुत सारे पेपर चिपके हुए हैं।

यह समुद्र के पास की पिक्चर है।

यह पेड़ अमरूद के है।